घर के ऊपर बहुत ही खूबसूरती से लाइटिंग की गई है।

और फल्स के भी दूकान हैं कपड़ों के दूकान हैं दुकानें ढेर सारी हैं।

नाव में बैठे हैं लोग और पीछे का लड़का नाव चला रहा है।

रस्सी जैसा लटका हुआ दिखाई दे रहा है दुकान खुली हुई है बल्ब दिखाई दे रहे हैं दुकान के अंदर सामान भी बहुत दिखाई दे रहा है।

थोड़े हरी घास दिखाई दे रही है थोड़े मिट्टी की ज़मीन दिखाई दे रही है थोड़ी वाइट ज़मीन दिखाई दे रही है।

दुकान है अभिनव पुस्तक सदन |

बाकी सब बच्चे बैठे हुए हैं एक बच्चा ज़मीन पे बैठा हुआ है एक बच्चा खड़ा है।

और गंदगी भी दिख रही होगी यहाँ पे इसमें ढेर सारे पौधे उगे हुए हैं।